यहां पर एक मार्केट में दुकान दिखाई दे रहा है जिसका नाम है नीलकंठ दा कार।

यहाँ पे बाहर में एक मेरून कलर का चर्चा का कार यहाँ पे खड़ी है पास में एक दुकान का शटर बंद है और नीली कलर का शटर है।

से यहां पे कुछ कांच का टेबुल टेबल --

सब बैलकुनि यहाँ पर दिखाई दे रहा है बैलकुनि का गॉर्ड वाल लोहे का देके बना हुआ है सामने एक बड़ा सा गेट दिख रहा है वो स्टीलो का गेट है वो अभी बंद हुआ है।

ये एक जिम सेंटर दिखाई दे रहा है जहां पे झूले का--

एक एक सीमेंट का वाल दिखाई दे रहा है।

आगे एक दुकान है मार्केट में एक बड़ा बिल्डिंग भी यहां पे लाइट जल रहा है ये अभी रात का चित्र है।

ये है गोल्डन कलर का व्हाइट कलर का ब्लैक कलर का मैरून कलर --

पीछे बड़ा बड़ा छोटा छोटा हरा हरा पेड़ दिखाई दे रहा है और बहुत सारा हरा हरा घास दिखाई दे रहा है नीचे में।

यहां पे एक पक्का रोड दिखाई दे रहा है पीछे का ब्लैक कलर का पास में एक पोडिंग दिखाई दे रही --

और एक पिलर के पास में भी चेयर रखा हुआ है।

अं टोपी बहेने गा का टोपी उसका सबूत है।

के कैमरा दिखा रहा है।